जैसे दुकान का फोटो है शायद मेडिकल स्टोर हो या क्रोकरी का शॉप हो।

काफी पुराने ही बिल्डिंगों में के ऊपर पेड़ जमाए हैं आस पास भी काफी सारे पेड़ हैं।

और इस तरफ सोफे पे काफी लोग बैठे हुए हैं। दो थीं बक्से रखे हुवे हैं व्यक्ति उनके पास खड़ा हुआ है।

इस दृश्य में एक गाड़ी खुली हुई रिपेयर हो रही है इसका नंबर है टी_एस जीरो नाइन एके दो हजार पैंतीस टायर्स पड़ा हुए है।

कुछ बोतलों में रखी हैं एक बच्चा खड़ा हुआ है नीली और पीली टी शर्ट पहन के पीछे कुछ सामान रखा हुआ है एक कुर्सी खाली पड़ी हुई है।

यह बेड बन रहा है। आधा अधूरा बेड है और वह सामने शीशा है। शीशे में कोई फोटो खींच रहा है। आसपास सब कारपेंटर का सामान रखा हुआ है।